इनके बीच हजार लगाया गया है। पेड़-पौधा है नारियल का भी पेड़ दिख रहा है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

पहाड़ तो है पार्क बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारा पेड़-पौधा लगाया गया है। फूल भी लगाया गया है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिसलने वाला भी है।

यह गूगल बुक सेंटर टेलीकॉम कुत्ता भट्ठी रोड --